कांच के गेट दिखाई दे रहे लकड़ीया दिखाई दे रही है पास में ही एक झोपड़ी बनी दिखाई दे रही है झोपड़ी के बाहर कुर्सियां लगी दिखाई दे रही है।

पलंग लगा हुआ दिखाई दे रहा है पीली पन्नी लगी है तथा एक सफेद बोर्ड लटका हुआ दिखाई दे रहा है।

टमाटर का लंग रंग लाल है एक औरत बैठी दिखाई दे रही है ऊपर चादर टंगी हुई दिखाई दे रही है नीचे सड़क दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा बरामदा दिखाई दे रहा है बरामदे के आसपास लोहे जाली लगी हुई दिखाई दे रही है कुछ आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे दो औरत खड़ी हुई है।

सामने टेबले दिखाई दे रही है जिस पर बच्चे बैठे हैं बच्चे एक कागज का कुछ कर रहै हैं रंग-बिरंगे कागज दिखाई दे रहै हैं और एक मैडम ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है।

जो कि पीले कलर का है उस पर इलाहाबाद ए. टी. एम. लिखा हुआ है इलाहाबाद बैंक ए. टी. एम. लिखा हुआ है।

सामने की और एक चबूतरा दिखाई दे रहा है और अंदर से मशीन दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक ए. टी. एम. दिखाई दे रहा है ए. टी. एम. के अंदर कांच के गेट लगे हुए है तथा ए. टी. एम. की मशीन दिखाई दे रही है।

एक आगे छोटी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सफेद रंग की है उसमें लोहे की जाली लगी हुई है। सड़क दिखाई दे रही है। सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो--

बिल्डिंग के नीचे दूसरी तरफ एक बेवा बड़ा-सा बोर्ड लगा है जो कि नीले कलर का है जिस पर फेडरल बैंक लिखा हुआ है।

तालाब में कम पानी दिखाई दे रहा है तालाब में हरे पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहै है पीछे बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहै हैं एक बड़ा सा पुल बना हुआ दिखाई दे रहा है हरे कलर का है।

पीछे दीवार दिखाई दे रही है जो की सफेद कलर की है गाय के आगे चारा डला हुआ है एक टोकरा दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पे एक बहुत बड़ी सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर एक पीला बोर्ड लगा है जो की पार्किंग का है। एक खंबा दिखाई दे रहा है जिस पर दो स्ट्रीट लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बड़ी सी होटल दिखाई दे रही है जिस पर एक ब्राउन कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर गोल्डन शब्दों से लिखा हुआ है होटल जैनपुरिया बाहर सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

सीढ़ियों में छोटे-छोटे गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं गमलों में पौधे लगे हुए हैं होटल का रंग कत्थई कलर का दिखाई दे रहा है।

ऊपर एक मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर बजरंगबली का दिखाई दे रहा है। बजरंगबली का रंग ऑरेंज दिखाई दे रहा है। मंदिर में सफेद टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रही है। एक बाल्टी रखी हुई है। दीपक रखे हुए।

एक बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में नाव रखी हुई है नाव खाली रखी हुई है नाव का कलर सफेद दिखाई दे रहा है तालाब में पानी दिखाई दे रहा है जिसका रंग हरा है पीछे--

बाल्टी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसमें से पानी गिर रहा है। आस पास पेड़ दिखाई दे रहे हैं। स्विमिंग पूल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर एक छोटी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है डी सर डायनेमिक क्लासेस का बोर्ड लगा हुआ है।

यह काफी छोटी दिखाई दे रही है दीवारें हरी कलर की दिखाई दे रही है पास ही में एक काला लोहे का गेट दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर एक किला दिखाई दे रहा है किला काफी छोटा दिखाई दे रहा है किला मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है ऊपर झंडा लगा हुआ है पास ही में एक दीवार है जो की सीमेंट की बनी हुई है।